और यहाँ पे दो कुर्सी है और एक हैंड वाश है।

और यहां पे एक ब्‍लू ब्लू कलर की--

जमाने का घर बना हुआ है यह इसको बोलते है कोठार इसके अंदर से एक वो दरवाजा है जो ऊपर के लिए जाता है एक यहां पर एक सीढ़ी होती है।

उसके ऊपर भी होता है दो चार घर घर टाईप के होते हैं एक यहां पे घेरा है एक तिरपाल है।

और यहाँ पे हम बाल काटने के लिए आते हैं यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है जिसको बोलते हैं में हम --

आप यहाँ पूरी फैमिली के साथ आओ यहाँ बड़े-बड़े ड्रैगन होगा यह मिक्‍की माऊस है आप कुछ भी कर सकते हो आप खाना खा सकते हो सबकुछ मिल जाएगा आपकों।

यहाँ पे एक घर है यहाँ पे एक होटल है।